साइड्स के पीछे पौधे हैं जो कि बहुत घने हैं।

इन गाड़ियों के आगे थोड़ा पौधे लगाए गए हैं यहां से एक गाड़ी आ रही है।

कपड़े भेजे जा रहे हैं यह दुकान को काले सीरिया लगाई गई है यहां से एलुमिनियम। --

दुकान के आगे एक सफेद कलर की गाड़ी रखी गई है।

यहां से डंबल्स भी नीचे हैऔर एक रॉड भी नीचे।

वहां से एक लड़का जा रहा हैजो कि काले कपड़ों में है।

इसके दीवारें सफेद है और लाइट्स भी रखी है।

ये एक सड़क है जो उसके अंदर ये बिल्डिंगे लगाई गई है जो की सफेद कलर की--

इसके अंदर बड़े-बड़े सबस पोश भी लगाएंगेहैं।

यह बेचता हैदरवाजे चौकट खिड़कियां।

ये दुकान पठानकोट में है इसका जो मालिक है वो है लालवीर भूषण बिहेल।

दुकान को आगे से शीशा लगाया गया और हर गाड़ी को एक ढब्बा ऊपर रखा गया है।

और कुछ खिलौने भी लटका किए हैं ऊपर से बड़े-बड़े बालू भी रखे हैं यहां से पाउच भी रखे--

चीजें रखे वहां से एक बड़ा मशीन भी रखा गया--

ये एक कमरा है जहां पे ब्लू टेबल रखा है उसके ऊपर एक मशीन है।

पीछे और कुछ झोले भी है यहां से भी एक झोला है और छोटी-छोटी--

स्विमिंग पूल में बैठा हुआ है और एक सरदार जी।

यहां पे बहुत सारी हरियाली छाई हुई है।

ये लाइब्रेरी है जहाँ पे बहोत सारे लोग अभी बैठे हुए--

साइड से बहोत किताबें लगाये गये हैं कई तरीके के रैक लगाये--

चाई डाल रहा है इसके आगे बहुत सारे--

पीछे से एक माइक्रोवेवर है फ्रिज है।

दुकान है जिसका नाम है सैनिक साइकल मार्ट। --

संतरे रंग की है कॉलेज का नाम है एसएम कॉलेज हाजीपुरा।

चीज का मोटर है जो ये अभी ठीक कर रहा है मिस्त्री को काला पतलून और सफेद--

ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर की दुकान है।

और सामान रखा है जमीन पर कुछ छोटी-छोटी बोतल्स भी रखी गई है।

कई तरीके के टाइल्स डिब्बे में रखे गए हैंऔर सेंटर। --

और कोटाइल वाला रास्ता जा रहा है।

और दो सफेद तकिए रखे गए हैं और एक सफेद रजाई रखी गई है।

नीचे वाले शाल ऑफ मेंबर रिटायर उसके बाद--

ये गाड़ियों का शोरूम हैजहां जिसका नाम--

ये एक नाई की शॉप है जहां पर एक लड़का एक काली चेयर पर बैठा है।

पीछे से घास लगी हुई है और उसके ऊपर--

ऊपर एक बड़ी लाइट लगाई गई है।

इन बिल्डिंग के पीछे और छोटे-छोटे घर भी--

ये एक बगीचा है जहां पे बहुत पीले फूल हैं।

ये जो आदमी है इसकी एक ही टांग है ये अपाहिज है।

इस साइड से भी एक आदमी है जो अपना हाथ उठा के उंगली ऐसे कर रहा है।

एनफील्ड इसके बोर्ड के ऊपर लिखा हैराइडर शॉपी जिस पे अपना नंबर भी दिया गया है।

जहां से लोग जा रहे हैं इस पार्क में कई रीके की --

इस साइड से भी बाग है उस साइड से भी बाग है।

यहां से एक शर्ट दिया गया है जिसके आगे एक सफेद गाड़ी खड़ी है।

ये लाल कलर के लहंगो को सुनहरी काम किया गया है।

भी रखा है जो अभी सिला हुआ नहीं है और एक नेट लाल दुपट्टा भी--

यहां से भी एक आदमी खड़ा है वहां से भी आदमी।

कई सारे लोग नजर आ रहे हैं जो--

मोटरसाइकिल्स पे है कुछ मोटरसाइकिल खड़ी।

को कई दुकान है आगे से।

है और एक दुकान के आगे एक--

इसके यहां से भी एक दुकान है यहां से एक सफेद कलर का--

दुकान को इस साइड से शीशा बड़ा लगा के है और इस साइड ।

स्कूल के नीचे एक बोर्ड लगाया है दरवाजे पे पीछे एक और बोर्ड इसकी बिल्डिंग पे लगाया गया --

एक मिकी माउस बना के है जिनके हाथ में एक-एक बलून है।

यहएकबड़ी पारक हैजो कि घास से भरी हुई है।

इस मैदान कोसाइड से बंद किया गया है।

जिसमें टेबल लाल कलर के लगे हैं लाल कलर की चेयर्स है।

दीवार पे अल्फाबेट्स की चार्ट है।

दीवार का दूसरा कलर लाल है उस दीवार के उस साइड से भी बच्चे हैं।